सीमेंट के बड़े बड़े बीम बने हुए है।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

यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर नीचे सुखी घास है और यह एक पहाड़ी परहै।

यह एक एरोप्लेन है जो नीचे जमीन पर अभी उतरा हुआ हैं।

यहाँ पर निचे की तरफ एक गुफा जैसा दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर कैलेंडर भी लगे हुए है और यहाँ पर एक फ़ोन पे का स्कैनर भी है दुकान के अंदर आदमी बैठा हुआ है बाहर लोग भी है।

और बहुत सारे झंडे लगे है लाल गुलाबी हरे पीले कलर के--